मुझे यहां आस पास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान की तस्वीर है।

यहां काफी सारे स्टूल रखे दिख र--

यहां काफी लाइट्स दिख रही हैं।

मुझे यहां एक हवाई जहाज दिखाई दे रहा है।

यहां एक गमला रखा हुआ है।

मुझे यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

आस पास दोनों तरफ बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहाँ रेलवे स्टेशन दिखाइ--

और दो लाइट्स लिफ्ट में जलती हुई दिखाई दे--

यहां पानी बहुत तेज धार में--

मुझे यहां एक घर दिखाई दे रहा है।

वह रेड अ ग्रीन डस्टबिन दिखाई--

मुझे यहां कार दिखाई दे रही है।

मुझे यहां काफी गाड़ियां दिख--

मुझे यहां मसाल जलती हुई दिखाई दे रही है।

मुझे यहां दो चेयर --

जहां एक बेड दिख रहा है।